ये एक बहुत बड़ी साड़ी के दुकान है उसमें एक मुल्ला जी बैठे है साड़ी की दुकान है और सूट दिख रहा है सूट बहुत अच्छे अच्छे पीले --

वाइट एंड रेड में तो बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा हैं और --

एंड उसमें पेड़ रखे गए हैं कोई भी ब्लू कलर एंड पीले कलर हरा कलर एंड व्हाइट में--

वहां का पहाड़ और पौधे देखने में बहोत अच्छे लग रहे हैं।